बियर्ड कटिंग के लिए कई सारे सामान रखे हुए हैं ।

बोट से ले गयी तस्वीर है जो की नदी के किनारे बसे हुए बस्ती की तस्वीर है जहाँ पर कई सारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया मंदिर भी है।

सामने की तरफ एक मनुष्य बैठ कर कुछ कार्य को कर रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा की है यहाँ पर यह शाखा जोया रोड अमरोहा की है।